येलो कलर ब्लैक कलर की --

एक मैरेज होम दिखाई दे रहा है जिसमें फुहारे भी चल रहे हैं लाइट भी जल रही है।